रेस्टोरेंट है और जा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है चारों तरफ।

यह सभी बिजली के पार्टस है और इसको खोल-खोल कर रखा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है।

चौक है बाइक खड़ी ये चार चक्का खड़े है टेंपू --